वहाँ पर बोहोत सारी बिल्डिंगे भी दिखाई प वहाँ पर लोहा लंगर भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर कोई कचड़ा भी दिखाई दे रहा है कचरा भी वहाँ पर बोहोत डाला दिखाई --

ये बॉर्ड पर कुछ ब्लैक है लिखा हुआ है मू टका दिखाई दे रहा वहाँ पर पेड़ें भी बहोत सारे दिखाई दे हरे-भरे और ये मुझे साफ-साफ मेन रोड गया हुआ है।

देखने को मिल रहा है जैसे कोई पहाड़ सा हो पहाड़ में मुझे कुछ बिल्डिंगे मुझे दिखाई मकान भी दिख रहा है कुछ कोई गांव आस-पास में नज़त वहाँ पे कुछ पानी जैसी भी दिख रहा पहाड़ है ना पहाड़ में कई प्रकार के पैंट भी लगे हुए हैं बादल में भी--